यहां पर बहुत सारे लाइटें लगी हुई है।

अंदर में बहोत सारी बोतलें रखी हुई है टेबल बनी हुई है।

पीछे दीवार है एक घर भी दिख रहा है।

बहुत सारे पंखे लगे हुए हैं।

जिसके बाहर एक आदमी खड़ा है।

अंदर में खिड़कियां दरवाजे लगे हुए हैं।

यहां पर एक बहुत बड़ा मॉल है जिसके अंदर खिड़की दरवाजे लगे हुए हैं।

यहां पर बहुत बड़ा पहाड़ है जिसमें पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

जग भी रखा हुआ है।

माला पहनी है नीचे रेड कलर का मैट बिछा हुआ है और सारो चारों तरफ अंधेरा दिख रहा है।

एक सीढ़ी है जिसका रंग ब्लैक है।

नीचे एक डब्बा है जिसमें पेन है।

बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई है।

नीचे में एक गुलाबी कलर का कपड़ा गिरा है।

बहुत सारे कुर्सियां हैं नीचे रेड कलर का मैट बिछा हुआ है।

आगे में एक साइकल लगी हुई है।

यहां पर एक बहुत बड़ा रोड दिख रहा है।

ऊपर में घर है जिसमें खिड़की और दरवाजे लगे हुए हैं।

उसमें एक बूढी औरत अन्दर जा रही हैम --